बिकॉज़ कुछ लाइट्स नजर आ रही है यहाँ बहुत सारी कुर्सियां ए.सी टेबल फँस बलूंस नजर आ रहे हैं डेकोरेशन बहुत प्यारी की गई है यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी या किसी की शादी है लग रहा है।

यह अ सी.बी.एस.ई से एफिलिएटेड है। यहाँ कुछ टाँगे नज़र आ रहे हैं पीछे कार नज़र आ रही है।

कुछ खिड़कियां नजर आ रही है एक और पोस्टर बना हुआ है दिवार पे।

सामने एक स्टैचू नजर आ रहा है पीछे कुछ अ डेकोरेशन किया गया है वो नज़र आ रहा है पेड़ नजर आ रहा है।

यह एक अ चिकित्सालय की तस्वीर लग रही है जहाँ एक अ औरत बैठी है।